इस फोटो में मुझे मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे फूलों की सजावट दिखाई दे रही--

इस फोटो में मुझे घर दिखाई दे रहे है।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

इस फोटो में मुझे बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे मोबाइल की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो मे मुझे खिड़की दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे किताबों की दुकान दिखाई दे रहीं हैं।

इस फोटो में मुझे पत्थरों की चट्टान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे गुफा दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे एक बड़ा क्रॉस दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे फूलों की सजावटे दिखाई दे रही है।